और शाम और इस भवन में एक चेन चैनल गेट लगा है जो काले रंग से पोता हैं।

जिसमें गोल -गोल तकदी टंगी हुई है जिस पर पन्द्रह रूपये लिखा हुआ है।

और इ इसमें बीच में से ए डिवाइड है कमरा --